यहाँ पे काँच लगे हुए हैं | दाहिने साइड पर लेडिस दो जेन्ट्स हैं | एक लेडिस हाथ मे झोला लिए हैं ।

यह एक निर्माणधीन मकान है जिस जिसको बनाया जा रहा है।

ए साइड पर इमारदी मकान है दाहिने साइड पर बंद शटर है।

यह एक दुकान है दुकान में ढ़ेर सारी किताबें और कॉपियाँ रखी हुई हैं दुकान में एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो बैगनी कलर का शर्ट पहना हुआ है।

चर्च मंदिर के ऊपर दाहिने साइड मे दो लाउड स्पीकर लगे है।

यह छठ पर्व मनाया जा रहा है यहाँ पे ढेर सारी महिलाएं --

पोखरे के पास हरे भरे कुछ पत्ते सामने गिराए के पड़े हैं |

एक मोटर साइकिल दो साइकिल एक व्यक्ति दो बच्चे और एक स्टूल एक बाल्टी --

ये एक निर्माणाधीन मकान है जिसके छत के ऊपर काम चल रहा है सरिया दिखाई दे रही है तीन मजदूर काम कर रहे है।